इसके पीछे बहोत सारे घर हैं| और घर के आसपास बहोत सारे पेड़-पौधे भी देखने के लिए मिलते हैं और एक खंभे के ऊपर एक बत्ती भी जलती हुई दिख रही है।

इस चित्र मे हमें एक सामने की तरफ दीवार दिखाया गया है जो की एकदम ईंटों से बना है।

इस चित्र में हमें एक कपड़े का दुकान दिखाई गया है जिसका नाम है मयूर कॉम्प्लेक्स । उसके सामने बहुत सारी बाइके रखी हुई है।

और उसके आस-पास कुछ घर है। उस इमारत मे बोहोत सारे मीनर भी देखने के लिए मिलते हैं छोटे-छोटे ।

पीछे की तरफ किसी मोहरत का समारोह हुआ है। और खुला आसमान भी देखने के लिए मिलता है।